यहाँ पर एक बड़े हॉल का पोटो दिया गया है। बच्चे और कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर पाँच छः बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं। कलर कर रहे हैं और एक के हाथ में फेविकोल है। कुछ बच्चे काले कपड़े पहने हैं पीछे लाल कलर की दिवाल है।

सामने पर्दे खुले हुए है। यह सब ऊपर की तरफ हाथ करके खड़ी हुई हैं।